पीछे की तरफ छोटे-छोटे घर दिख रहे हैं। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है। एक पेड़ दिखाई दे रहा है।